तो आप देख सकते हो आपके सामने पेड़-पौधे वगैरा लगे हुए है रास्ते --

पॉलीथिन वैगरह डली हुई है सारा कचरा कूड़ा डला हुआ है इस नदी में।

हेल्लो दोस्तों आप देख सकते हो ये मस्जिद है। ये मस्जिद काफी अच्छी लग रही है। देखने में आप देख सकते हो।

सभी प्रकार की आपको मिठाइयां केक वैगरह देखने को मिल जाती है यहाँ पर अच्छी-अच्छी आपको --

तो आप देख सकते है इसमें उम्म छोटी-छोटी मछलियाँ भी हैं जो की दिख रही हैं यहाँ से आप देख पा रहे हो।

हेल्लो दोस्तों आप देख सकते हो ये जंगल है तो जंगल में ये पेड़ पेड़ काट दिए गए हैं तो कितना पूरा सुनसान हो गया है।

लाते है ये लोग और बेचते है यहाँ।

है जो की आप देखिये यहां कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई हैं। ये सभी लोग इस रेली को देखने के लिए आए हैं।

हेल्लो दोस्तों आप देख सकते हो सामने आपको तिरंगा झंडा लग तिरंगा झंडा लहरा रहा हैं जो की भारत की शान है।

ये मंदिर काफी अच्छा लग रहा हैं आप देख सकते हो यहाँ छोटी-छोटी और भी मूर्तियाँ है।

हेलो दोस्तों आप देख सकते हो ये एक कार है कार की रिपेयरिंग की जा रही है ये कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है तो --

केफे में एक बार आप जरूर से आइए यहाँ की --